इनका जो ऊपर का छिलका होता है वो थोड़ा दरदरा होता है तथा इन्हें खाने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है।

सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपनी तनख्वाह भी बैंक से ही निकालते हैं बैंक हमें काफ़ी सारी सुविधाएँ प्राप्त करवाता है बैंकों का नया साल एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक चलता है।

इनसे उनका शारीरिक विकास भी होता है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।

गरम कपड़े सर्दियों के मौसम में पहने जाते हैं यह हमें सर्दी से बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं महिला पुरुष बच्चों के --

किराने की दुकान में दिन भर में इस्तेमाल होने वाली सारी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं जैसे तेल साबुन सर्फ इत्यादि।

मोर की औसत आयु क़रीब पचीस से तीस साल तक की होती है।

झूला झूलते वक्त किसको आनंद नहीं आता। झूला झूलते समय एक अलग ही आनंद प्र-प्रतीत होता है।

हमारे अलग-अलग प्रकार के नदियाँ का उद्गम होता है जो की हमारे लिए उपयोगी बनती है। हिमनत हिमनत साल भर किम से ही ढके हुए होते हैं।